है उसके बगल में पौधा है फिर उसके बगल में लड़की खड़ी है फिर उस साइड लड़का लोग खड़ा है।

और पेट्रोल पंप पे बहुत सारा लाइट जल रहा है।

और वहां पे दोगो आदमी दिख रहे हैं और वहां गेट है और खिड़की भी है और घड़ी है।

चार-चार को कुर्सी है सब में और यह जगह काउंटर है।

और ब्राउन कलर का डिज़ाइन बना हुआ है और लाइट है और टाइस लगा है।

इसमें बहुत सारा कुर्सी लगा है और तीन गो स्टाफ है।

और बहुत सारा लाइट चल रहा है और टाइल्स हैं मैट बिछा हुआ है।

और उसमें तीन चार वो आदमी खड़ा है और बाहर बोरिया रखा हुआ है।

और ए_वी_आर लिखा हुआ है और झंडा है और शीशा लगा हुआ है और टाइल्स लगा हुआ है और कुर्सी --

यह इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का है और वहां पे बहुत सारा आदमी हैं।

और घास है बहुत सारी पेर हैं और रोड है और तार लगा हुआ है और--

और यहां पे गार्ड है लोग हैं पैर हैं तार है। व्

का वहां पे पेर है और दो बच्चा है और वो लोग कुछ रहा है और नीचे रोड है।

और उसपे भी बहुत सारा पेर उगा हुआ है और झूला है और कैंप लगा हुआ है कुछ का।